एक लम्बा सा दीवार बना हुआ है जिसमे कलर पिंक वाइट ब्लैक ऑरेंज है साइड में बहुत सारा पानी है कुछ उसमे ग्लीन ग्रीन कलर है कुछ वाइट कुछ ब्लैक है साइड में बहुत सारे घर दिख रहे हैं जो वाइट कलर के हैं ।

बड़ा सा एरिया है जिसमें बहोत सारी घाँस हैं। कुछ मट्टी वाइट सी दिख रही हैं। बड़े-बड़े से गाच्छ हैं जिनमें लम्बे-लम्बे से डाल हैं जो ग्रीन हैं।

कुछ लोग उस साइड में इकट्ठा हैं। आसमान हल्का ब्लू ग्रीन पिंक कलर का है ऊपर में ब्रिज दिख रही है जिसका साइड का एक वॉल दिख रहा है वाइट कलर का।

एक बोहोत बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर में दो जेब्रा है जिनके कलर व्हाइट एंड ब्लैक है। सामने में जाली लगा हुआ है ब्लैक कलर का। अंदर में --

कबूतर हैं जिनके मुँह के सामने काला हैं पीछे मुँह पर वाइट कलर हैं और उसमें कुछ छोटे-छोटे से काले बुँदे हैं।